ये मकान के अंदर एक बाइसिकल रखा दिखाई दे रहा है आस-पास कुछ कुर्सियाँ रखी दिखाई दे रही हैं।

हमें एक पुराना सा मकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है साथ ही एक बड़ी सी शटर दिखाई दे रही है ऊपर एक मिट्टी का छत दिखाई दे रहा है साथ ही एक तार जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ टेबल्स लगे दिख रहे है एक सीढ़ी जाती हुई दिख रही है सामने एक पर्दा दिख रहा है।

एक आदमी कुर्सी पर बैठा दाढ़ी बनवाता दिख रहा है सामने।

सामने के बड़ी-सी मंदिर नजर आ रही है मंदिर में के सामने लम्बी-सी सीढ़ी जाती हुई दिख रही है दो आदमी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे है।

सामने कुछ मजदूर खड़े दिख रहे हैं जो छत की ढलाई करते हुए दिख रहे हैं साथ ही में एक लाल रंग की रस्सी जाती हुई दिख रही है।

इसमें एक बहुमंजिल इमारत नज़र आ रही है जिसके सामने दो आदमी माइक में कुछ बोलते हुए नजर आ रहे है।

साथी ही में एक बाहर एक पोस्ट ऑफिस का डब्बा लगा दिख रहा है खिड़की नज़र आ रही है।